सामने में तीन आदमी खड़ा है और जो कि इसमें से एक ब्लैक व्हाइट व्हाइट कलर का जो शर्ट पेंट पहना है ब्लैक कलर का बेल्ट पहना है।

बगल में घर है जो ग्रीन येलो कलर का जो कलर पूरा डिस्ट्रैक हो चुका है।

बगल में एक कप पानी का जार रखा गया है।

पीछे में रैक भी है इसमें चांदी सोना सारे रखा हुआ है उसके सामने में एक गेट है।

कुंदरी रखा गया है टमाटर रखा गया है खीरा रखा गया है।

और एक तराजू भी है एक आ आदमी भी खड़ा है जो आदमी रेड कलर का पहना है और ब्लैक कलर का पैजामा पहना है।

नीचे में एक बाइक भी खड़ी है उसके सामने में बहुत ज्यादा सीमेंट वाला ईटा भी रखा गया है उसके ऊपर में एक धामा रखा गया है।

यह एक गौतम बुध्दा का दृश्य है।

अ दो अ दोनो गेट का कोना में फ्लावर का डिजाइन दिया गया है।

पिछे में एक पहाड़ भी है और पूरा पीछे तरफ पेड़ है पेड़ कलर हरा है।

फिर एक गोदरेज रखा गया है गोदरेज का कलर ब्लैक ब्लू रेड है।

दोनों छोटी छोटी बच्ची हैं दोनों कैंडल से उनको एंट्री करवा रहा है।

बाइक का भी कलर ब्लैक है फिर पीछे में घर है उनके घर में ढ़लाई की नहीं हुआ है।

लाइब्रेरी का कलर ऑरेंज है अं और ब्लू और इसके गेट ब्लू कलर का गेट है। गेट के दोनों स बगल में दो पेड़ है।

दो तीन ग्लास रखा है दोनों लड़की व्हाइट कलर का टी शर्ट पहनी है।

यह एक सोप का दृस्य है। जिसमें से सोप में रैक बनी हुई है। रैक का कलर वाइट है।

सामने में कांच के खिड़किए है फिर गेट भी है।

सामने में एक काउंटर रखा है काउंटर में स्टीगर चिपकाया गया है एच_पी_सी का।

यह एक झील का दृश्य है जिसमे पानी के बहुत तेज बहाव है।

यह एक हार्डवेयर शॉप का दृश्य है जिसमें से एक रैक भी बनी हुई है।

सारे आदमी लोग खड़े है पीछे में एक स्कूल है स्कूल का नाम है श्री महस हरिदास उच्च विद्यालय टेन प्लस टू ।

यह एक टोयोटा शोरूम कंपनी का दृश्य हैजिसमें से पोस्टर फॉर्च्यूनर का लगाया गयाइनोवा का लगाया गया है।

पूरा टाइल्स का काम किया गया है डाउन में।

यह एक स्कूल में प्रेयर हो रहा है उसका यह दृश्य है सारा छोटे छोटे बच्चा लोग खड़ा है।